यह बहुत बड़ा बरंडा दिखाई दे रहा है इसमें बहोत अछि लाइटें लग रही है वाइट कलर की बलून लग रहे रेड वाइट येलो ।

यह बहुत से खेत दिखाई दे रहे है सभी खेतो में हरी भरी आ हरी भरी जगह दिखाई दे रही है।

यह एक नदी का का नदी बहे रही है और आसपास चट्टानें पड़ी हुई है बड़ी बड़ी दोनों और दोनों साइड से पहाड़ी है ।